ये एक शॉप है। जिसमे की स्पोर्ट्स की चीजे मिलती है जैसे कि फुटबॉल है बैडमिंटल है बैट है।

ये एक हिरन पार्क है जिसमें की बहोत सारी हिरनें हैं।

पौधे लगे हुए हैं। एक बच्चा है छोटा सा जो कि पौधों की सिंचाई कर रहा है। पौधों को पानी दे रहा है। जिससे कि वह हरे-भरे रहें। बढ़ते रहे पौधे सारे।